चित्र में मुझे कई सारे सामान रखे हुए दिख रहे हैं चित्र में मुझे--

दे रहा हैं चित्र में कटनी जेक्सन न्यू दि--

और चित्र में मुझे शॉप पे रखा हुआ कई सारा सामान निशा--

एक बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है चित्र में मुझे मैदान पर खेलते हुए बच्चे दिखाई--

चित्र में मुझे एक किराने की शॉप दिख रही है।

चित्र में मुझे शॉप पर रखे हुए पानी बोटल और स्प्राइट का बोटल दिखाई--

चित्र में मुझे झरने से आता हुआ पानी सफेद दिख रहा है।

चित्र में मुझे स्टेज दिखाई दे रहा है।

चित्र में मुझे एक बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है।

डेकोरेशन गद्दी पर दिख रहा है और फूलों की लड़ियाँ --

चित्र में मुझे कई सारे लोग चलते फिरते हुए दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे हॉल पर रखा हुआ ठैलियां दिख रहा है जिसमें मरीजों को ले जाते हैं।

चित्र में मुझे कई सारे कपड़े और फैन लगा हुआ--

किया हुआ दिख रहा है। चित्र में बैलूनस का कलर गोल्डन ब्लैक है।

चित्र में मुझे कटंगी खुर्द का स्टेशन दिखाई दे रहा है।

चित्र में मुझे लैब की अलमारियो पर रखी हुई--